ते फुटबॉल से टिका हुआ जूता नजर आ रहा है।

यह एक मंदिर का गेट जैसा दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है वाटर पार्क में एक बत्तख का --

यह एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

यह एक स्कूल की टीचर है।

के एलविस् सैलून का बोर्ड लगा हुआ है। सैलून के सामने की ओर एक बाइक रखी हुई है।

नदी में दो नाव नजर आ रही हैं।

यह एक एयरपोर्ट है जिसमे एक ऐरोप्लेने खड़ा हुआ है।

यह एक स्कूल की दीवाल नजर आ रही है।

कुछ गेंहू के कट्टे भी रखे हुए हैं।